और एक लोहे के गेट दिखाई दे रहा है।

उसके नीचे गमला में कुछ चार पौधे लगाया गया है।

अलमारियां में बहोत डब्बे दिखाई दे रहा है।

पहाड़ पे बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे है।

बिल्डिंग के जस्ट सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक मकान है इस मकान के बाहर बाईकें के लगी हुई हैं।